तरह तरह की डेकोरेशन हुई है एग बीच में मंडप दिखाई दे रहा है जो की फूलों से सजा हुआ है।

ये एक सोने चांदी की दुकान है जहां पे चांदी के कई बर्तन दिखाई दे रहे है आरतियां दिखाई दे रही है।

लोगों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं पादरी भी दो तीन खड़े हुए हैं।

कई लेडीजें हाथ जोड़के खड़ी हुई है कई जेंट्स भी एक रो में खड़े हुए हैं।

ये एक कार गैराज दिखाई दे रहा है जहां पे कारों की--

ये एक ईरिक्शा गैराज है जहां पे लोग अपनी ईरिक्शा को सुधरवा रहे हैं कोई चका चेंज करवा रहा है कोई लाइट दिखा रहा है।

ये एक गार्डन का सीन दिखाई देता है जहां पर बीचों बीच एक झरना बह रहा--

ग्राहक उनको खरीदते नजर आ रहे हैं कोई छोटी फिश है कोई बड़ी फिश है कोई कलरफुल फिश है।

कुछ टीचर टीचर्स यहां से वहां चलते नजर आ रहे हैं ऊपर फ्लैग लहरा रहा है।

कुछ टीचर्स ग्राउंड में इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में कोई भी राजा महाराजा के टाइम का पुराना खंडहर दिखाई दे रहा है।

यह एक इलेक्ट्रीक शॉप दिखाई दे रही है जिसका इनौगरेशन हो रहा है दरवाज़े पे अम ढेर सारे बलून लगे हुए हैं लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

रे ऊपर से रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है ट्रेन आती और जाती भी दिखाई दे रही हैं।

कई लोग काउंटर पे खाते हुए नजर आ रहे हैं कई लोग खड़े हुए हैं कई लोग आते जाते दिखाई दे रहे--

इस पिक्चर में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र दिखाई दे रहा है।

चाय पीते दिखाई दे रहे हैं ऊपर कई प्रकार के बैलून लगे हुए हैं रेड कलर के व्हाइट कलर के वेटर --

पिक्चर में एक मंदिर का सीन दिखाई दे रहा है जहां मंदिर के बाहर--